इसमें बीच में एक बड़ा सा पिलर लगा हुआ है और पीछे की साइड एक मिरर लगा हुआ है।

तथा कुछ घास हरी दिखाई दे रही है इसमें पीछी पीछे की ओर कई झाड़ियां भी नजर आ रही हैं।

यह दृश्य शायद किसी जलाशय या नदी का है जिसमें सामने की ओर एक नौका है नौका पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

सामने की ओर दूर तक पानी पानी नजर आ रहा है सामने का दृश्य साफ है।

सामने कुछ व्यक्ति कुछ खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा सामने की ओर बहुत सारी नमकीन व बिस्किट के दुकानें नजर आ रही हैं।

यहां सामने एक ऐ_सी भी दिख रही है और एक बड़ा सा पर्दा नजर आ रहा--

यह चित्र किसी झरने का नजर आ रहा है जिसमें सामने की ओर पानी गिर रहा है और ऊपर पहाड़ से दिख रहे हैं।

तथा उसके नीचे एक शटर है शटर के बगल में एक औरत दिखाई दे रही है एस_बी_आई बैंक के बाहर बहुत सारी बा बाइकें नजर आ रही हैं।

इसमें सामने की ओर बहुत सारे प्लस नजर आ रहे हैं गाये कुछ घास खाती हुई नजर आ रही हैं।

इसमें नीचे जमीन पर बहुत सारी ईंटे बिछी हुई नजर आ रही हैं।

इसमें बहुत सारे लोग सामने की ओर दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक शॉपकीपर और कुछ ग्राहक भी नजर आ रहे हैं।

यह दृश्य शायद किसी एक दुकान का जिसमें बहुत सारे सोफे व गद्दे दिखाई दे रहे--

यह दृश्य शायद किसी रिफाइनरी या फैक्ट्री का नजर आ रहा है।

यह दृश्य शायद किसी की शादी का है जिसमे पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे है।

ये दृश्य किसी बड़ी बिल्डिंग या स्कूल का नजर आ रहा है।

जिसमें सामने की ओर एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड पे इंटरनेशनल मैर्टीयल आर्ट्स स्कूल इंडिया लिखा हुआ है।

तथा बगल में ही एक पर्दा लगा हुआ है जिसके सामने एक और फ्रॉक नजर आ रही है।

तथा छोटी छोटी घास भी दिख रही है इसमें कुछ बड़े बड़े पौधे भी दिख रहे हैं सामने की ओर पत्थरों को काटकर ही एक दीवार बनाई गई है।

यह दृश्य किसी बस स्टैंड या मार्केट का है जिसमें सामने की ओर दो बसे दिखाई दे रही हैं।

यह दृश्य किसी फोर व्हीलर का है जिसमें फोर व्हीलर के ऊपर कुछ क्रेन टाइप का लगा हुआ है।

ये दृश्य शायद किसी बड़े वॉटरफॉल का है जिसमें बीच बीच में कई सारे तालाब से नजर आ रहे हैं।

ये दृश्य शायद किसी के बेडरूम का है जिसमें सोफा पड़ा हुआ है सोफे पे तकिया लगी हुई हैं।

जो बड़ा कलरफुल दिखाई दे रहा है इसमें बगल में दीवार है जो सफेद कलर से पेंट की गई है।